और इसकी दीवारें लाल और सफेद हैं और दूसरी साइड लाल कलर की हैं।

सामने शीशा लगा है और दो लोग पीछे में दिख रहे हैं।

दूसरी साइड बहोत सारे पेड़ लगे हैं।

और दो बच्चे फोटो खिंचवा रहे हैं गैंडा के साथ।

और ऊपर वाल हरे कलर का जालीदार कपड़ा लटका है।

जिसमें जंजीर में दो ताले लगे हैं।

और घास भी लगी हुई है।

और कुछ छोटी छोटी मूर्ति बनी है।

ये एक बहुत बड़ी सी खाली जगह है।

एक पेड़ आगे भी है।

सामने एक बड़ा सा ऑफिस लग रहा है।

और कुछ पेड़ भी हल्के हल्के दिख रहे हैं।